यह एक बहुत बड़ा ग्राउंड का दृसय है और ग्राउंड के चारों तरफ बाउंड्री किया हुआ है जो कि लोहे का है और ब्लैक कलर का है।

और बाउंड्री के चारों तरफ भी पेड़ पौधे लगाए हुए हैं।

और इस बाउंड्री में ढेर सारे बच्चियां नृत्य कर रहे है।

ग्राउंड के चारों तरफ पेड़ पौधे लगाए हुए हैं।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

और इस दुकान के सामने में एक टोटो भी लगाया हुआ है।

और ऊपर में डार्क ब्लू कलर का पुट्टी किया हुआ।

नीचे में टाइल्स लगा हुआ है।

यह एक कमरे का दृश्य है इसकी दीवार की कलर पीली है।

घर के बाहर में एक बड़ा सा ग्राउंड है।

और इस कमरे में एक वाइट कलर का दरवाजा भी लगाया हुआ है।

यहां पर एक लड़का है।

दुकान के बाहर में ढेर सारा कार्टून रखा हुआ है।

ढाबा के बगल में एक और दुकान है।

और यहां पर एक टेबल भी है जो कि ब्राउन कलर का है।

और इस तबेले के ऊपर में करकट लगा हुआ है और करकट में हरे रंग का पोल भी बांधा हुआ है।

इस गार्डन में रास्ता बनाया हुआ है और नीचे में टाइल्स लगे हुए हैं।

और इसकी दीवार में बल्ब लगा हुआ है और सिलिंग में पंखे लगे हुए हैं।

और टेबल की बगल मे ही--

दो तीन चेयर भी रखा हुआ है।

इस ग्राउंड के चारों तरफ बाउंड्री किया हुआ है जो की वाइट कलर का है।

अरे स्टेज के पीछे में पीला कलर का दीवार है और दीवार के बगल में एक बल्ब लगाया हुआ है।

और इस दुकान में ढेर सारा अलमारी बना हुआ है।

और इस सैलून के नीचे में टाइल्स लगाया हुआ है।

और इस गेंदे के फूल में कहीं-कहीं गैप भी किया हुआ है।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

और इस हॉल के सीलिंग पे बल्ब लगे हुए हैं।